लाल कलर की साड़ी और पीली कलर साड़ी और यहां कथायी कलर की साड़ी और बैगनी कलर की साड़ी पहने दिखाई दे रही है जो की देखने में बहुत अच्छी लग रही है।

यहाँ पर एक बहोत ही बड़ा एक शादी का हॉल दिखाई दे रहा है जो की लाउन्ज के तरह नजर आ रहा है और यहाँ पे हमें एक बहोत ही बड़ा स्टेज बना हुआ नजर आ रहा है।